ए_टी_एम मशीन में ए_सी लगी हुई है।

देख के व्यू अच्छा लग रहा है और पेड़ पौधे बहुत सारी चीजें--

बाइक है साफ सफाई है बॉक्स रखा हुआ है ।